फोटो में श्री राम कृष्ण परम हंस विवेकानंद--

और झरने के साथ काफी सारे हरे पेड़ पौधे और एक लड़का फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहा है।

दृश्य का फोटो है जहां पे काफी सारे भीड़ में--

यह दृ फोटो में एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है जहां पे रेलवे की पटरियां नजर आ रही है और--

एक ऑफिस दिखाई दे रहा है और ऑफिस में काफी सारे काउंटर नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में काफी सारी छोटी-छोटी मछलियां दिखाई दे रही है।

यह एक कपड़े का दुकान दिखाई दे रहा है जहां पे शेल्फ पे काफी सारे डेली यूज के जींस टी शर्ट सॉक्स आ --

और मैगी चॉकलेट सब नज़र आ रहे है।

यह एक ग्रेन मार्केट की फोटो नजर आ रही है जहां पे शोरूम के अंदर--

इस फोटो में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग का एक गेट नजर आ रहा है। गेट जो है--

टाटा मैजिक और जीप गाड़ी खड़ी नजर आ रही है।

इस फोटो में काफी सारे सिलेंडर --

पोस्टर में लिखा है न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ।

एच_पी गैस इंडस्ट्रियल सप्लायर्स लिखा हुआ हैं और बाहर--

और दुकान के ऊपर बोर्ड में लिखा है ओपन किचन ट्वेंटी फोर हॉर्स -- टू --

इस फोटो में बहोत बड़े बड़े पहाड़े नजर आ रहे हैं।

कुंड में अपना पूजा कर रहे हैं।

यहां पे एक अम्म बिल्डिंग दिख रही है और--

इस फोटो में काफी सारे व्हाईट कलर के फूलों के माला नजर आ रहे हैं और नीचे--